और इस गेट के अन्दर में एक घर है और यहाँ बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है ।

इस घर में बोहोत सारे रूम भी बने हुए है यह घर देखने में बहुत ही सुन्दर है और यह घर बहुत ही दूर तक --

ये सब नाव पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस नदी के बीच में कुछ लोग भी हैं इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ भी हैं ।

यह एक बोहोत बड़ी होटल है। इस होटल को बोहोत अच्छी तरीके से लाइट से सजाया गया है।

बहुत सारे लोग हैं जो इन मछलियो को खरीदने आए हुए हैं यह मछलिया बहुत ही अच्छी हैं ।